इस फोटो में मुझे बहुत सारी कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे कार्यालय खान प्रबंधक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे चार कबर्ड दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

इस तसवीर में मुझे एक बाइक दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाइ--

इस तस्वीर में मुझे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉस्पिटल की लॉबी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।